मुझे ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है और उसपे कॉमर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां मुझे कुछ तस्वीर भी चिपके हुए दिखाई रही--

जिसकी यहाँ मुझे और छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ वहाँ से एक गली गयी हुयी दिख रही हैं।